यहां पर एक सब्जी का गंडा लगा हुआ है जिस पर कुछ अनार रखे हुए हैं।

कुत्ता खड़ा हुआ है और इसके फर्श में टाइलें लगाई हुई हैं।

एक ने नारंगी कलर के टी-शर्ट और ब्लैक कच्छा पहन रखा और एक ने जींस धारी दार टी-शर्ट पहन रखी है।

और उसमें से एक सफेद कलर का है और एक मकान के ऊपर सफेद बालकनी लगाई हुई है।